एक कार काली और सफेद रंग की की दिख रही है उसका टार हरका कर्व है सामने से कार टूटी हुई है।

उसके कुछ सामान जमीन में लटकते दिखाई दे रहे हैं।

वहाँ भी एक कार खड़ी हुई है पीछे एक सफेद बिल्डिंग दिख रही है।

किनारे भी हरे-भरे जाड़ दिख रहे हैं कुछ छोटी-छोटी बिल्डिंग भी दिख रही है बीच से आने-जाने का रास्ता भी दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक ग्राउंड देख रहे हैं ग्राउंड में फर्स में हरी-हरी घास दिख रही है ग्राउंड के चारों तरफ--

सफेद कलर की कार खड़ी हुई है उसी के पीछे एक सफेद बिल्डिंग दिख रही है बगल में एक आदमी भी खड़ा हुआ है आदमी सफेद कलर के कपड़े पहना हुआ है।

किनारे साइड में कुछ सामान जमा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का आइटम भी दिख रहा है टूल्स भी दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक हरा भरा उद्यान देख रहे हैं उद्यान की जमीन में हरी हरी घासें दिख रही है।

कुछ खराब बोरे रखे हुए हैं तार में कपड़े भी लटके हुए हैं।

इस चित्र में हम भारतीय डाक का बोर्ड देख रहे हैं जिसमें वन टू फोर डबल जीरो वन लिखा हुआ है कलर लाल दिख रहा है किनारे हरी हरी झाड़ियां दिख रही हैं।

की बाइक भी खड़ी हुई है बाइक में मिरर लगा हुआ है।

और भी उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कांच भी लगे हुए हैं।

सामने एक फावड़ा दिख रहा है उसके बगल में एक नीली कलर की बाल्टी भी दिख रही है।

हरी कलर की लाइट दिख रही है कुछ कुर्सियां भी दिख रही है काला आसमान दिख रहा--

इस चित्र में हम एक दुकान देख रहे हैं दुकान के ऊपर कृष्णा सुपरमार्केट लिखा हुआ है।

इस चित्र में हम उद्यान के किनारे एक रोड को देख रहे हैं उद्यान में हरी-हरी घास दिख रही है बीच में पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक प्लाई बोर्ड की दुकान को देख रहे हैं प्लाई बोर्ड की दुकान के दोनों तरफ प्लाई ही प्लाई रखी हुई है।

आदमी के नीचे एक ऊपर से लटकता हुआ पंखा दिख रहा है कुछ प्लाइयाँ --

इस चित्र में हम बाईसिकिल की दुकान देख रहे हैं इस दुकान में एक से ज्यादा बाईसिकिल रखी हुई हैं।

कुछ पुतलों में कपड़े भी लटके हुए हैं एक आदमी काउंटर में खड़ा हुआ है उसके सामने एक लाल कलर कपड़ा पहने पुतला खड़ा हुआ--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

इस चित्र में हम एक पीली कलर की बस देख रहे हैं पीली कलर की बस का नंबर प्लेट भी दिख रहा है सामने एक सफेद कपड़ा पहने हुए आदमी भी भी खड़ा है।

इस चित्र में हम एक चाय का मग देख रहे हैं चाय के मग में नेसकैफे लिखा हुआ है मग का हैंडल सफेद कलर का है अंदर चाय भी रखी हुई है।

फर्श में घास दिख रही है चारों साइड हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

किनारे एक बाइक भी खड़ी हुई है बाइक का वाइचर दिख रहा है।

इस चित्र में हम एक मिर्ची को देख रहे हैं मिर्ची हरी कलर की दिख रही है एक व्यक्ति के द्वारा मिर्ची को कुछ हाथ में लगाया जा रहा है व्यक्ति की नीली शर्ट दिख रही है।

मिर्ची के सामने कैरेट दिख रहे हैं कैरेट नीले कलर के दिख रहे हैं।